यहा पर एक इमेज दिखाई दे रही है इमेज मे जाली लगी हुई है एक प्लेट लगी जो काले रंग की जिस पर गोलाकृति बनी हुई है ये काले रंग की है स्टील की प्लेट है इसपर एक --

जिसपे नीले रंग का पर्दा लगा हुआ है उसपे एक डॉगी लेटा हुआ है जो की सफ़ेद रंग का है उसका है एक इंजेक्त्शन और कुछ पाइप भी राखा हुआ--

भैसे दिखाई दे रही है जो की काले रंग की है दो भैसे दिखाई दे रही है पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है एक आदमी दिखाई दे रहा जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी उसका कंधा दिखाई दे --

सामने तक दीवार दिखाई दे रही है जहा पे कुछ कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे है नीचे का फर्श कैद है जहा पर ईटें दिखाई दे रही है और ये बोहोत बड़ा मेहल टाइप का दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जो की बादामी रंग की जिसपर रेलिंग लगी हुई है सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा ग्राउंड मे मिट्ठी फैली हुई है दो पुलिस वाले खड़े हुए है जिन्होने खाकी रंग की ड्रेस पहन रखी है।

सड़क पर एक ऑटो जा रहा है। जिसके आगे एक कार जा रही वो लाल रंग की उसके पीछे वो सफ़ेद रंग की कार जा रही उसपे शीशे दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की है उसके सामने गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे हरी-हरी झाड झड़ियों कि किनारिया लगी हुई है जो की बहुत सुंदर शेप मे कटी हुई है बीचमे एक गोल आकृति दिखाई दे रही है।